पीछे की तरफ में बड़े बड़े रैक भी देख पा रही हूं।

जहां पे मुझे बहोत सारी ईंटे पत्थर और--

जोकि पहाड़ की आकार का दिखाई दे रहा है यहां के आस पास बहोत सारी झाड़ियां भी--

आगे की तरफ में बड़ा सा ग्राउंड देख पा रही हूं जिसमें बड़े बड़े पेड़ लगे हुए है।